जिसमें बहोत सारे आदमी नजर आ रहे हैं जो कि कुछ स्टेज पे है और कुछ नीचे चेयर लगा के बैठे हुए हैं।

पीछे में एक पर्दा है जिसका कलर ब्राउन और व्हाइट नजर आ रहा है।

यह दृश्य एक स्टेशन का है यहां पे सामने में ट्रेन लगाया हुआ है।

कलर ग्रे ब्लू और स्काई ब्लू है।

नीचे में बहुत सारे आदमी चेयर पे बैठे हुए हैं।

यह दृश्य एक हाईवे का है यहां पे सामने पे बहोत सारा ट्रक जा रही है।

रोड का कलर ब्लैक नजर आ रहा है।

दो झंडा भी नजर आ रहे हैं।

कमरे में एक दरवाजा नजर आ रहा है जिसका कलर ब्राउन है।

नीचे का जमीन का कलर ब्राउन नजर आ रहा है जिसमें कि छोटे छोटे घास जम चुके हैं।

यहां पे अगल बगल बहोत सारे रूम है कुछ रूम के दरवाजा खुले हैं और कुछ रूम के दरवाजे बंद है।

सामने में एक लूना लगाया हुआ है जिसका कलर ब्लैक है।

यह दृश्य एक किराना दुकान का है।

ऊपर में दो तीन लाइट्स जल रहे हैं जिनका कलर व्हाइट है ऊपर में करकट से छाया हुआ है जिसका कलर सिल्वर है।

इसका कलर वाइट ब्लू येलो ब्राउन है सामने में ग्रिल का कलर ब्लू नजर आ रहा है।

जनरेटर से एक तार गया हुआ है।

जिसपे येलो कलर से नोवा लिखा हुआ है।

यह दृश्य एक का है जिसका कलर व्हाइट ब्लैक और सिल्वर है।

नीचे में बहोत सारे आदमी आर पार हो रहे हैं।

यहां पे सामने के कबर्ड में बहुत सारे सामान रखे हुए हैं।